आंटी दिखाई दे रही है बच्चा दिखाई दे रहा है अंकल दिखाई दे रहे है रेड लाइन दिखाई दे रही है

ब्लू कलर के फ्लॉवर है पिंक कलर के फ्लॉवर है पिंक कलर का पर्दा है येलो कलर गोल्डेन कलर के खंभे है पिंक कलर का पर्दा है व्हाइट कलर का पर्दा है।

छेद दिखाई दे रहा है नीचे टेबल दिख रही है छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है दिखाई दे रहे है।